और एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ है और यहां कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं।

यह एक जिम का दृश्य है जिम में बहोत सारे अ इक्विपमेंट पड़े हुए हैं।

यह एक पार्किंग एरिया है जहां पर--

और यहां बहोत सारे शोपीस भी है।

जो नीले रंग का है जिस पर लिखा हुआ है भारत--

उसके बाहर एक दो बाइके खड़ी हुई है।